एक तस्वीर है जो महादेव की तस्वीर है शिवलिंग इसको बोला जा सकता है यह बहुत ही सजावट भी किया गया है।

मेरे सामने एक तस्वीर है। ये छठ की तस्वीर है। मतलब ये सूर्य उदय होने की समय की तस्वीर है सामने बांस --

और ईख भी दिखाई दे रही है पीढ़ा भी दिखाया दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है आग भी दिखाई दे रही हैं।

अ ऊपर से रैक वैक सब लगा हुआ है। कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग लाइन पर ही खड़े हैं।

मेरे सामने एक तस्वीर है जिसमें मैं देख सकती हूं यह के केक की तस्वीर है केक के ऊपर गुलाब बना हुआ है केक के ऊपर पिंक कलर का केक के ऊपर क्रीम लगा हुआ है।

मेरे सामने एक तस्वीर है जिसमें मैं ये देख सकती हूं कि ये पूरे पानी की तस्वीर है। पानी --

सामने एक तस्वीर है। ये हॉस्पिटल के एक चैम्बर की तस्वीर है। आईसीयू वार्ड जैसा लग रहा है। सामने बोहोत सारी मशीनें हैं। पर्दा जो है पूरा ब्लू कलर का है।

पहाड़ है थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर के और आसमान भी जो है थोड़ा पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है पहाड़ पूरा थोड़ा सा --

यहाँ पे बन रहे हैं। आस-पास कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा।

आस-पास सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं अ छोटा मूर्ति भी दिखाई दे रहा और बड़ा मूर्ति भी दिखाई दे रहा। आसमान पर सफेद दिखाई दे रहा है। ऊपर से गुंबज है जो ब्लू कलर --

मेरे सामने एक तस्वीर आई है। यह किसी के घर की तस्वीर है जो घर बन रहा है। नीचे के भाग का प्लास्तर कलर किया हुआ है। ऊपर जो भाग है वोभी --

जो दीवाल है वो पूरा काई लगा--